बिल्डिंग के पास दो खम्भे खड़े हुए हैं।

यहाँ पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है। यहाँ पर एक आदमी रिक्शा चला रहा --

यह एक खेल का मैदान है।

ये अमिटी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर एक पोस्टर लगाया हुआ है।

स्टोर के सामने एक बोहत बड़ा पेड़ भी खड़ा हुआ है यहाँ पर एक बाइक भी खड़ी हुई --